ये एक बार लग रहा है जिसपे बहोत सारी कॉकटेल मॉकटेल --

सुल्तान चढ़ाते हैं ऊपर एक गुब्बारे बहोत लगे हुए हैं सामने।

ये एक मेला लगा हुआ है जहां पे बहुत सारे--

और लगे हुएं हैं जो पीछे खेलने के लिए बच्चो के लिए--

और बहोत कुछ और रखा हुआ है चॉकलेट्स भी है इसमें।

पीछे एक सीनरी लगी हुई है और बेड की पीछे वाली साइड है।

और चेयर्स का कलर है काला।

एक साइड डीजल लिखा है एक साइड पेट्रोल लिखा है।

अमृतसर के मशहूर कुलचे व नान एक आदमी सामने खड़ा हुआ है।

और लाल रंग से बोर्ड है।

टेंट लगे हुए हैं और बहोत ऊंची पहाड़ी है।

एक की बोर्ड पे लिखा है कृष्ण पुस्तक भंडार।

जिसके बोर्ड पे लिखा है कोका कोला --

यह शोरूम है खाने पीने का जिसका नाम है मंचीज--